और यहाँ पे कई सारे अ अ चेयरस भी है और ये वास अ सफ़ेद रंग और पीले रंग की है।

ये एक क्रिकेट ग्राउंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पूरा पिच सब लाइन सब डालके रेडी किया गया है।

शायद कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन हो और सब पेपर लाइन से जमा गया जमाया गया है।

ये एक दूकान है। जहां बहुत से कपड़े अलग अलग साईज में है। छोटे बच्चो के लिए कपड़े है फ्रॉकस है पेंट्स है और टॉप्स है।

और पीछे इतनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है।

यहाँ पहाड़ में शायद लोग अ वाकिंग के लिए आये है और इसलिए इन्होने अपनी बाईक्स खड़ा कर के वो वाकिंग को चले गए है। व --